वह टाइप का दिख रहा है।

एक पुराने समय का तालाब दिखाई दे रहा है जिसके चारो तरफ़ से बाउण्ड्री बनाई --

उस बिल दीवार के सामने से --

कुछ झंडे भी लगे हैं और मंदिर भी दिख रहा है|

सामने एक बैंक दिख रहा है जिस का नाम एक्सिस बैंक है।

एक नाव जो है पर एक सवार नाव को चला रहा है।